छोटा-छोटा पौधा लगा हुआ है बगल में बड़ा बड़ा पौधा है और बड़ा विशाल गाछी है |

कलर का मकान बना हुआ है पीछे एक बड़ा सा पेड़ दिख रहा है।

ग्राउंड है यहाँ क्रिकेट खेल रहा है सब ए बहुत सारे लोग क्रिकेट खेल रहे है ये बीच पीछे ब्लू कलर कलर का ऊं बौं बाउंड्री बना हुआ है पीछे एक मकान है बहुत बड़ा-बड़ा पौधा है आसियान दिख रहा है |